जहाँ पे डिस्प्ले में बहुत सारे मिक्सर्स प्रेस --

इस गेट पे गणेश जी बने हुए हैं।

रस्सी पे कुछ कपड़े टंगे हुए है।

ये एक गार्डन दिखाई दे रहा है।

धर्मशाला का गेट लाल कलर का है वहीं पे लिखा हैं।

यहां पे लड़कियों के टेबल और कुर्सियां रखी हुई है।

ये एक फर्नीचर की दुकान दिख रही है।

वहीं पे बलूंस लगे हुए है।

ये यहां पे दो भगवानों की मूर्तियां दिख रही हैं।

ये एक बड़ा सा गार्डन है।

साइड में एक शेड लगा हुआ है।

ये एक मोबाइल का शोरूम दिख रहा है जिसपे लिखा है।

गार्डन में बहोत सारे गमले लगे हुए हैं। ये गमले रेड कलर के हैं।

तालाब के साइड में एक बड़ा सा मगरमच्छ बैठा हुआ है।

उसके सामने बहोत सारी हरियाली वाला गार्डन हैं।

साइकिल की दुकान दिख रही है।

जिसपे टेबल कुर्सी रखी हुई है।

ये न्यूली इनॉग्रेटेड है जिसमें येलो --

कॉलेज के बाहर बहोत बड़ा गार्डन दिखाई दे रहा है।

टेबल और चेयर्स रखी हुई हैं।

हाथ रिक्शाएँ साइकिल रिक्शाएँ खड़ी है।

जिसमें बहोत सारे टेडी बीयर्स रखे हुए हैं।

ये एक पार्किंग एरिया दिख रहा है।

ऑफिस में एक बड़ी चेयर दिखाई दे रही है।

ये एक लकड़ी का कारखाना दिख रहा है।

बाहर दो वाइट कलर की टंकियां दिख रही है।

ये एक कोल्ड ड्रिंक की दुकान दिख रही है।

हॉस्पिटल के बाहर एक एंबुलेंस खड़ी है।

ये एक छत का फोटो है छत के फोटो के ऊपर सोलर लगाया जा रहा।

रेस्टोरेंट के ऊपर लिखा है नेवेद्य--

जहां पे बहोत सारी साड़ियां और ड्रेसेस हैंगर में टंगी हुई है।

ऊपर बोर्ड पे लाइट डाली गयी है।

जहां पे लिखा है होटल सादगी शुद्ध शाकाहारी।

ए_टी_एम के बाहर पेपर पर कुछ लगा हुआ है।